दुकान पे काउंटर पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा है।

बोतलों के नीचे कुछ सामान रखा--

बैग के अंदर कुछ डिब्बे रखें हुए हैं जिनका कलर व्हाइट है।

कुछ आदमी खड़े हैं और एक लेडिस को एक आदमी पुरस्कार दे रहा है।

उस पर टैंक पर एक गमला है गमले में पेड़ लगा है।

सेन्टर के अंदर एक प्रेशर जैक है।

जिनका कलर व्हाइट है झींगे की मुछे भी आ रखी हैं।

यहां पर लोहे के लिए रेलिंग लगी है।

फूलों के बीच में कुछ महिला और आदमी हैं।

यह एक राम गैस सर्विस शामली की दुकान है।

यह एक गार्डन है गार्डन के अंदर एक दीवार है।

सोफे के बीच में एक व्यक्ति है छत पर लाइट जल रही हैं।

टेबिल के चारों ओर तीन व्यक्ति बैठे हैं जो कुछ खा रहे हैं और एक के हाथ में मोबाइल है जो वह अपना मोबाइल चला रहा है।

पेड़ मैदान में खड़ा है यहां पर कुछ लकड़िया भी खड़ी है।

सेंटर के अंदर एक मशीन रखी हुई है।

मशीन के ऊपर एक रॉड रखी हुई है।